झाड़ी के बगल में मुझे यहां पर मोटर साइकिल देखने को मिल रहा है जिसका रंग काला है मुझे वहां पर एक--

स्कूटर देखने को मिल रहा है जोकि व्हाइट कलर का है पीछे में मुझे एक ऐ_सी देखने को--

हरा कलर का डब्बा देखने को मिल रहा है साइड में मुझे बहुत सारे बैलून देखने को--

मुझे यहां पे नीचे में टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल मे मुझे यहां पर ये --

केवल देखने को मिल रहा है पीछे में हमें ब--

कुर्सी देखने को मिल रहा है कुर्सी के बगल में मुझे यहां पे टेबल देखने को मिल रहा --

गाय देखने को मिल रहा है गाय के बगल में मुझे यहां पर--

कंप्यूटर ऊपर में टेबल पे रखा हुआ देखने को मिल रहा है साइड में मुझे--

बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं पीछे में पेड़ देखने को मिल रहा--

न्यू टाइप का डस्टबिन देखने को मिल रहा--

मुझे यहां पर एक स्कूटर देखने को मिल रहा है स्कूटर से मुझे यहां पर--